दो अफराद बैठे हैं और साइड पे एक शख्स खड़ा है जिसने काले रंग का कुर्ता पहना है और वो एक मीटिंग कर रहे हैं।

बैठने की जगह बनी हुई है जहां पर महिलाएं भी बैठी हैं ये बहुत ही खूबसूरत जगह है।

साथ में एक शख्स बैठा है जो अपना कोई काम कर रहा है।

और साथ में एक खूबसूरत सा माल जगह बनाई गई है जिसके ऊपर नेट और जाली लगाई गई है।